यहाँ पे सामने बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं जिनमें हरे कलर में पत्ते लगे हुए हैं और सामने एक गेट जैसा बना हुआ है।